और कैफ़े के उपर बड़े बड़े अक्षरों में लजीज पिज्जा लिखा हुआ है।

हवाई जहाज में कुछ लाइटें जल रही है।

इमारत सफ़ेद और हरे रंग में रंगी हुई है।

टेबल पे एक पानी की बॉटल दो दो कप कॉफी के है और--

एक आदमी शोरूम से बाहर निकल कर जा रहा है।

यहां पर एक साइकिल भी है जिसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं।

वो अच्छी मिर्च को अलग अलग करके उसे पॉलिथीन में बांधकर बेच रहा है।

कई लोग झुंड बनाकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं।

ये एक सुंदर से मंदिर की तस्वीर है।

एक रेस्टोरेंट या कैफे की तस्वीर है।